और सामने एक चीज रखीं हुई दिखाई दे रहीं हैं।

यह चित्र में एक रा हाउस तथा एक जगह का निर्माण दिखाई दे रहा है।

नीचे हरियाली भी दिखाई दे रही है।

और आसमान दिखाई दे रहा है।

इसमें सारी जिम की मशीनें पीले कलर की लग रही है।

लोग पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक केयर एन क्योर फिजियोथेरेपी क्लिनिक का दिखाई दे रहा है।

इसमें झरने से पानी आ रहा है।

गेट के बाजू में वॉचमैन दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सी गाड़ियां पार्क करी हुई दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक होटल की है जिसका नाम द भानु इन है इमारत कई मंजिल वाली है।